ऊपर में आपका फुल स्लिम लाइट वगेरा भी लगाया गया है आपको अच्छा फिटनेस वगेरा निचे चलने के लिए फर्श भी बोहोत बढ़िया बनाया हुआ है|

थोड़ा सा आपका आपका डी.जे. भी डी.जे. लगा हुआ है इधर मैगनेट भी है लोहा-वोहा अगर भारी हुआ तो उसके एथी से उठाता है तो पूरा लगता है बालू वैगरह भी यहाँ पे है लाल मिट्टी और ला के रखा हुआ है इसी को लग रहा है की --

जो इस बहुत बढ़ियाँ से जो ये बाँध के पूरा सजाए होंगे सबसे बढ़िया इसी में इसका क्वालिटी है |

ये सब लेडीज लोग योगा कर रहे हैं प्लस इसमें आपको स्पीकर द्वारा योगा के लगे क्लास चलाया जा रहा है की साउंड वहीं से आपको जो इसका टीचर है --

ये भाईसाहब लगता है की बोहोत तेज बाइक चलाके पैर तोड़ लिया है।

और बढ़िया मैट वैगरह बिछा हुआ है यहाँ पूजा करने के लिए लगता है यह तो आराध करने के लिए सब एक-एक तरफ --

कर के आ उसके बाद चारो में पूरा उजाला हुआ है सामने छोटा छोटा पेड़ वगैरह भी है और लग रहा है नदी के पास में ही है ।